ऐ हो कपड़ा का दुकान बा जहाँ बहुत सारा कोट टागल बा और कुछ लोग यहाँ कोट खरीदे आये बाटे तो कुछ लोग दूसर कपड़े खरीदे आये बाटे आई--